जिसमें सामने एक बोर्ड लगा हुआ है।

यह एक बड़ी इमारत का बालकनी हॉल है।

कुछ गाड़ियां खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं।

और एक ठेला खड़ा हुआ दिख रहा है।

यह एक वेल्डिंग और कटिंग इक्विपमेंट की दुकान है।

यहां एक मंदिर के जैसा भवन दिखाई पड़ता है।

और कुछ छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं।

और मशवरा फीस सौ रूपये लिखा हुआ है।

कुछ घर के घरेलू समान पैकेट में रखे हुए दिख रहे है।

इसके बाहर कुछ व्यक्ति और महिलाएं खड़ी है।

और कुछ टेंपो और ई रिक्शा दिखाई दे रही है।

पीछे बड़ी बड़ी इमारत दिख रही है।

इसके आस पास बहुत से पेड़ नजर आ रहे हैं।

और एक बाल्टी और बड़ा बेकर रखा हुआ है।

बहुत सी लाइटें लगी हुई दिख रही है।

और एक लाइट और स्विच दिख रहे हैं।

जिसमें कुछ व्यक्ति खड़े हुए दिख रहे हैं।